और ऊपर दो झूले भी पड़े हुए हैं पीछे एक जिन्श का पैकेट भी रखा हुआ है।

यहां एक पहाड़ी है पहाड़ी पर ये--

यह एक घर के किचेन का दृश्य है।

यहां माइक पर एक औरत कुछ बोल रही है।

पीछे ईसा मसीह जी की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां एक बुश कार सर्विस सेंटर की शॉप है।

जहां ऊपर की तरफ काफी झूमर लगे हुए हैं।